पार्किंग एरिया हैं यहां गाड़िया खड़ी हैं कई तरीके की--

इसके अंदर शैंपू रखी हुई हैं दवाई रखी हैं डाई रखी है।

एक बन्दा आगे खड़ा हुआ है औ घ हरी कलर की घास है।

व्हाइट सी बनी हुई है ऊपर पौधे लगे हुए हैं साइड में रेलिंग है क्रीम कलर की पेंट हो रखी है ब्लैक कलर की रेलिंग है।

यहां पे फ्लाईओवर के काम चालू है मिट्टी खुदी पड़ी है पिलर खड़े हैं कॉलम खड़े हैं।

बच्चे यहां नहा रहे हैं मेरा बाबू भी नहाएगा इसमें अभी जाएंगे बाबू और मैं बाबू मेरा प्यारा सोना है बेटा है मेरा पारू बाबू है।

और पीले कलर का पिलर है बच्चा यहां पे आएगा बच्चा जिम करेगा एक माइक लगा रखा है उसने और साथ में बैठा हुआ है।

लकड़ी के पा प्लेट्स रखी हुई है बहोत सारी और यहां पे बाबू लेटा हुआ है यहां टाइल टाइल लगी हुई है और सोना यहां चल रहा है।

डल लगी है राठी की और राठी की चल रही है यहां पे।

कमरा बना हुआ है साथ में एक त्रिपाल ब्ल्यू कलर का पड़ा हुआ हैं सामने व्हाईट कलर का कमरा है।

बाहर बाइक खड़ी है अच्छी दुकान है एक कल एक पिलर खड़ा हुआ है और साथ में--

बहोत सारी बंद गोभी की खेती कर रखी है देखने में कितनी प्यारी लग रही है।

लकड़ी यहां पे काट कर रख रखी है यहां पे लकड़ियों के सामान बनाया जाता है।